पारक को एक दीवार से घर दिया गया है।

दीवार में एक उजले रंग का पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक बहुत सारे लोगों का भीड़ का दृश्य है।

दीवार में बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक आश्रम के अंदर का दृश्य है यहां पर आने जाने के लिए पतली सी एक--